सामने एक गेडा गेट दिखाई दे रहा है गेट पर बारघंटस्तर द्वार लिखा हुआ --

सामने एक नदी दिखाई दे रही है बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है पानी में पानी दिखाई दे रहा है साइड में नदी के पास में छोटे-छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक शॉप दिखाई दे रही है शॉप मिठाई की शॉप दिखाई दे रही है कुछ लोग खड़े हुए हैं एक लेडिस दिखाई दे रही है पर्स ले रखा है हाथ में --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

सामने रनिंग वाली जिम की मशीने रखी हुई है अलग अलग जिसपे लिट गार्पेच के लिखा फिटनेस यह प्लेयर्स जिम लिखा हुआ है ये जिम है।

फूलों का गुलदस्ता दिखाई दे रहा सामने एक पौधा दिखाइ दे रहा सामने टेबल पे एक आदमी बैठा हुआ पास में खड़ा हुआ ऑर्डर ले --

कुछ बच्चे और कोई एक कुछ आदमी योगा कर रहे हैं योगा क्लासेस लगा रहे--

एक हॉस्पिटल दिखाई दे रही है उसपे यूनियन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र लिखा हुआ है सामने दो व्हाइट पिलर दिखा ब्लैक पिलर दिखाई दे रहे है साइड --

शीशे ये कांच के शीशे के दरवाजे बने हैं बहुत से बाइक है स्कूटी दिखाएं अंदर दिखाई दे रही है शीशे --

पीछे की दीवार की तरह कुछ बॉक्स रखे हुए सजा के सभी रॉयस्टिक तरीके से पंखे के बॉक्स दिखाई दे रहा है कुछ छोटे पंखे --

सामने कई शॉप दिखाई दे रही है शॉप के शीशे के गेट और खिड़खियां लगे हुई है शोपो के नाम --